काले कलर का बहुत बड़ा पर्दा दिखाई दे रहा हैं।

कड़क जाल से बॉर्डर बना रखा है तथा खेतो के --

आसमान नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर बहुत सारे मवेशी दिखाई दे रहै है।

स्टूमड बन रखे है तथा किनारे किनारे बहुत लम्बे - लम्बे पेड़ घने - घने हरे -हरे दिखाई दे रहे है।

बोर्ड लगा है तथा वो भी लाइट से जगमगा रहा है दुकान के आगे मेज है उसपे सामान रखा हुआ है और कुछ पैकेट लटका रखे हवय--

ये फोटो में आप देख सकते है की एक चौड़ी सड़क जा रही है सड़क के किनारे कई बाइके खड़ी है तथा खम्भे दिखाई दे रहे है लाइट वाले --

इस फोटो के अंदर आप देख सकते है एक तखत है तखत पे बिस्तर है और तकिया नज़र आ रही हैं उसपे एक व्यक्ति लेटा हुआ है।

तथा बगल में बीच में भी कालीन बन रखी हैं हरे कलर की सामने उसके निचे की ओर एक स्पीकर दिखाई दे रहा हैं ब्लैक का --

उसके बगल घासें नज़र आ रही है कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं भूरे - भूरे --

निचे की साइड आप देख सकते है कि हरे -रे घने-घने पेड़ नज़र आ रहै है।

खुला आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है साफ़ आगे दवार है बहुत बड़ा --

येर फोटो में आप देख सकते है सामने एक बोट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जिसपे काफी चित्र और राइटिंग की गयी हैं।

इस फोटो के अंदर यह एयरपोर्ट का रनवे का रोड है जोकि काफी चौड़ा दिखाई दे रहा हैं।

सामने बहुत अच्छा सुन्दर नीले रंग के परदे और ला सफ़ेद रंग के परदों से सजा रखा है।

निचे की और लाल कलर की कालीन लगा रखी है बगल में ग्राउंड है जिसमें पेड़ दिखाई दे रहै है छोटे से बड़े --